जो सफेद रंग से पेंट है और साइड में लाल रंग के --

जो कई तरह के कपड़े पहन रखे हैं वो सभी लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं। सामने एक समारोह है।

और ये ईमारत क्रीम कलर की आआ क्रीम कलर से पेंट है। साइड में एक पाइप है जो लाल --

स्टील की रेलिंग लगी हुई है। सामने शेर बने हुए स्टैचू है और सामने अशोक चक्र--

दिखाई दे रहे हैं साइड में बिजली के खंबे दिखाई दे रहे हैं।

दिए गए इमेज में हमें स्विमिंग पूल नजर आ रहा है जिसका पानी नीला दिखाई दे रहा है। स्विमिंग पूल --

जो वो अ उनको वेट मशीन में तोला जा रहा है और कई सारे लोग हैं।

दिए गए इमेज में एक पक्की सड़क नजर आए है। सामने एक स्कूल है। स्कूल के दीवारों में तो कई तरह की --

उसमें दीवारे क्रीम कलर की हैं और रेड बॉर्डर है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। जिसमें कार्यालय आ कुछ लिखा हुआ है।

थोड़े सी दूरी में एक खंभा लगा हुआ है। खंबे में भी लाइट लगी है। खम्बे के नीचे --

आआम पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं जो हरे रंग में है और आसमान भी दिख --

सामने इमेज में दी गई में एक पक्की सड़क नजर आ रही है। उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है जो पीली --

भगवान बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। जिसमें लिखा हुआ है ओम नमो बुद्धाय ज जब भीम --

चार-पांच लड़कियां नजर आ रही हैं। एक लड़की ने नीले रंग की जीन्स और पर्पल कलर का --

आ क्रीम कलर की इंटरलॉकिंग एं अम् सड़क बनी हुई है दूसरी तरफ।